और अपनी दाड़ी मूंछ भी बनवाते हैं। इनसे काफी लाभ होता है जो कि हम उससे --

काफी शानदार मोड़ बनाई गई है। ये जो कि इनके वैसे जो डिवाइडर दिखाई दे रहे हैं।

इन्हें काटते हैं। ये अपन ऊंह अल्लाह के लिए एंह करते हैं --

यह गेम देख रहे हो हमारे सामने एक अह प्रथम बोर्ड आज इसी लिस्ट मेला स्टेज से सजाया गया है। जिसे --

यहाँ पर बर्डे रिटायरमेंट की पार्टी दे रहा हूँ। काफी बड़ी पार्टी है।

और बैंक के द्वारा हमारा पैसा भी इकट्ठा रहता है और हमें कोई प्रॉबलम नहीं होती बैंकों से --

बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है। जो कि हमारा काम होता है और जिन से हमें बहोत फायदा है। जो कि --